और हरा-भरा घास है ऊपर नीला आसमान है बहुत ही सुंदर सी कोमल सी जगह ये दिखाई दे रही है ।